कलर का बोर्ड दिखा रहा है जिस--

वहां पर एक अंकल दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेंट ढकी बकेट बॉक्स में पैक दिख रही है।

यहां दो तीन चम्मच दिखाई दे रहे है।